यहाँ पर तीन व्यक्त दिख रहा है एक व्यक्त के हाथ म-में फ़ोन है |

हरी-हरी घास दिखाई दे रही है कुछ इधर पेड़ है।

आ आस पास पे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

एक जिम क्लास है वहां पे बल्लोंन लगे है वाइट कलर के है। रेड कलर का है। ऊपर छत है वो वाइट है नीचे फर्श है।

ये एक प्लॉट दिखाई दे रही है।

कुछ पड़ी दिखाई दी ही वो भी ग्रीन कलर की। कुछ दुरी पे खंभा भी दिखाई दे रहा है वाइट कलर के हैं। कुछ दुरी पे मूर्ति भी दिखाई दे रहीं। कुछ लोग बैठे हैं। जहां पे कुछ दुरी पर मकान भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग इधर आ रहे हैं। कुछ लोग --

जिब एक दादी खड़ीं हैं औ एक प पास में पौधा खड़ा है। अ बउस एक खमा भी दिखाई दे रहा है। बहुत सारे पौधे भी दिखाई दे --